एक वापिस से एक बड़े से हॉल को देख सकते है जहा पे हमें कुछ क्रीम कलर की वाल देखने को मिल रही है और छतो पे जलती हुई लाइटे नज़र आ रही है।

और हम खुला आसमान को देख सकते है और ये देख सकते है नीचे की तरफ हम सीढ़ियों को देख सकते है जो की पत्थर की बनी हुई सीढ़िया है और वहां पे चलता हुआ आदमी लड़का हमे नजर आ रहा है जिसने पीले कलर का शर्ट पहना हुआ है और नीचे जीन्स पहनी हुई है और शूज पहने हुए है।